इस फोटो में तीन डम्मी दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारी बाईकें पार्किंग पर लगी हुई है एक तरफ --

तस्वीर को देखते हुए एक बूटी ब्यूटी पार्लर की फोटो दिखाई दे रही है।

ये जगह घूमने और आराम करने के लिए अच्छी लगती है।

उसके पीछे दीवार पर कई रैक है जिसमे काफी सारी पुस्तक और नोट बुक रखी हुई है।

नदी के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है बहुत अच्छी।